सिस्टर अच्छे व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए चप्पल वगैरह पिन्ह के बच्चे का अच्छे खासे ध्यान रखते बच्चा कही ना कही अच्छे खासे ड्राइंग अच्छे खासे कुछ ना कुछ अच्छी व्यवस्था बना रहें हैं।

छठ पूजा की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाये आप सभी लोगो के लिए साइकिल बाइक रोड पर छोटे-छोटे बच्चे घूम-फिर रहे है।

बच्चे के अच्छे खासे एग्जाम वैगरह भी दिए गए है कोई तरह् कि दिक्कत वैगरह भी नहीं --